यहां पे बहुत ज्यादा मूर्ति है यह बहुत सुंदर लग रहा है यहां पे--

ये फूल बहुत सुंदर है अ आदमी फू फूल में खड़े होकर फोटो खींचा रहे हैं।